बहुत सारे आदमी है और चार पांच ट्रैक्टर खड़े हुए है।

इस फोटो को देखकर हमें ऐसा लग रहा है --

यहां पर गोभी रखी हुई है टमाटर है और ये कद्दू है इधर मिर्ची है।

यहां हमे इस फोटो में यह दिखाई दे रहा है कि यहां ये घर बनने लग रहा है।

साइड में एक बॉटल है और यहां पर एक काला स्टूल है साइड में कोने में एक छोटा सा मंदिर है।

इसे साफ करवाने में दो आदमी है जहां पर नीला ट्रक है यहां पर बहुत सारा अनाज है।

जिसमें डॉक्टर मरीज का चेकअप चेकअप कर रहा है यहां पर ये दोनों चेयर पर बैठे हुए--

ये बहोत बड़ा ग्राउंड है सामने इसके साइड में दो घर हैं और सामने--

वहां पर तीन चार पौधे पेड़ भी लगे हुए हैं और गमलों में छोटे छोटे पौधे लगे--

इस फोटो में दिख रहा है कि यहां पर एक सामने बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

उसके सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है और बहुत सारे पेड़ पौधे रखे हुए हैं।

इस फोटो में हमें यह दिख रहा है कि यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं।

इस फोटो में हमें यह दिख रहा है यह एक वर्कशॉप की दुकान है।